जॉकेट पहन कर रेड रंग का शर्ट है।

बीच में टेबल है टेबल पे टी_वी है एक आदमी बैठा हुआ है।

सफेद कलर का बत्ती जल रहा है।

सामने मेज हैमेज पर कृष्ण भगवान--

सामने गोदाम है गोदाम में बहुत सारा कार्टून है टेबल बेंच लगा हुआ है।

ब्लू और छतरी है डेकोरेशन का--

बहुत सारा है तीन-चार ठो साफ दिख रहा है बेसिन भी है।

ये लाल रंग का बोटल दिख रहा है जग-मग जग-मग बत्ती जल रही है शेड का दरवाजा है साफ --

कुछ हरा-भरा पेड़ भी है मकान भी दिख रहा है।

बिछा हुआ है चारों तरफ लाइट जल रही है इस टेबल बेंच रखा हुआ है।

ये लाइटिंन बाथरूम बेसिन इसब--

सेल करने वाला दुकान हैदुकान में--

पॉट रखा हुआ हैकम्बोर्ड --

ये हॉल है हॉल में डाइनिंग टेबल है बीच में टेबल है।

ये टेबल बेंच रखा हुआ है टेबल पर टी-_वी है टी_वी चल रही है।

और बत्ती भी जल रहा है और धुंधुला-धुंधुला दिख भी रहे है साफ नहीं दिख रहा है कि क्या चीज है।

सामने मॉल है मॉल में बहुत डोकोरेशन है बाहर से शीशा लगा हुआ है और अंदर--

ये ट्रैक्टर है ट्रैक्टर रेड कलर की है।

ट्रैक्टर पर कोई आदमी बैठा भी हुआ है।

आइसक्रीम बोरा में रखा हुआ है नीचे फैला हुआ सामान रखा हुआ है।

फील्ड है इसमें सारा लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कोई है नहीं लाइट जल रही है।

ये मॉल है मॉल में बहुत सारा कुर्सी टेबल बेंच सब दिख रहा है।

और आदमी भी सफाई कर दिख रहे है।

पार्क के सामने रोड है क रोड के--

और गंजी व्हाइट कलर का पहना है।

मॉल है मॉल में डेकोरेशन है येलो और व्हाइट और रेड कलर का गुब्बारा है।

और सामने से बहुत सुंदर मंदिर पंडाल बना हुआ है जग-मग जग-मग चल रहा है पर्पल कलर पिंक --

इसलेटी कलर का बैंक और--

सामने गंगा जी की पानी दिख रहा है झरना की तरह है अंदर पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं।